कल चलते ही रहते है और यहाँ पर लोग आये हुए है बाहर ये ही बड़ी बात है क्योंकि आजकल लोग ज्यादा बाहर आते नही है वोह लोग सारे फ़ोन पे ही बिजी रहते है बाहर ऐसा प्लेन गेम खेलने के लिए कोई ज्यादा बाहर आता।

चित्र देखने में ऐसा लगता है की रात का समय का चित्र है इसको गाड़ी की अदर से लिया गया है क्युकी सामने की तरफ जो गाड़ी जो हिस्सा है वो नज़र आ रहा है जो वाइट कलर की कार जो है उसमे ब्लैक कलर की--

कुछ लड़ियां लगी हुई है ऐसा लग रहा हैं यह लड़ियां है जो हैं वाईट कलर की हैं और उसमे बीच बीच में थोड़ा सा रेड कलर की है यहाँ पे और पत्ते भी यूज की गए हैं और यहां पे एक ओरेंज कलर की एक पिलर है खाफी मोटी नजर आरही है।

और वो पीछे की तरफ मुड़ के सायद किसी से बात कर रहा है उसके कानो पे मास्क तो है लेकिन वो अ निचे की तरफ रखा हुआ है और ये दुकान बड़ी बड़--

इनोसेंट जो है जेंटल मेन नजर आ रहे है ऐसा लग रहा है की वो कही खड़े हुए है और सामने की तरफ देख रहे हैं देखते हुए काफी ज़्यदा इनोसेंट लग रहे है।